रखे हुए हैं और लाइट भी लगी हुई है यहां पे बहुत सारी।

यह शॉप है यहाँ पे अ अलग अलग कलर की साड़िया नीली।

और काफी ग्रीन कलर की घास है और दूर दूर तक हरियाली हरियाली --

यहाँ सड़क के किनारे खुदाई चल रही है और ये एक हर्ष नर्सरी ।

इक्कठे पड़े हुए है और यहाँ कुछ पेड़ खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

सोफे पे बैठे हुए है लाइटिंग यहाँ पे जली हुई है।

साइड में टेबल लगी हुई है दिखाई दे रही है यहाँ पे और लाइटिंग अच्छी लगी हुई है यहाँ पे।

यहाँ पर मछलियों का बाजार लगा हुआ है अलग अलग कलर की मछलिया यहाँ पर पड़ी हुई है रखी है ।

यहां ये बैंक के बाहर बाइक और हेलमेट --

हर तरह की लाइट यहाँ पे लगी है पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए है।

चेयर्स टेबल लगी हुई है तो काफी अच्छी भी लगी हुई हुई है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पे एक साइड एक बहुत हरे रंग का पेड़ लगा हुआ है।

और एक कमरा बना हुआ है उसमें का पेंट हुआ हुआ है मंदिर जिसा डिजाइन बना हुआ --

ओ की मार्किट लगी हुई है एक खड़ा हुआ है शॉप के बाहर।

यहाँ पे खड़ी हुई है और साइड में ।

एक आदमी फैले हुए है और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर डाला हुआ है।

अ एक शोरुम बना हुआ है ओर एक--

और यहां पे ईट की दीवार और रखी है।

ग्रीन कलर की रेलिंग लगी बनी हुई हैं और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं हरे रंग के--

तो काफी मतलब पौधे यहां पे मुझे दिखाई दे रहे है।